ये एक चित्र हैं और इस चित्र में फ्रेशर हो रहा हैं।

ये एक चित्र हैं और इस चित्र में एक कमरा सा नजर आ रहा हैं जिसमे जिम की बहुत सारी मशीने रखी हुई हैं जिसमें--

बाल्टी रखी हुई है और एक लड़का भी बैठा हुआ है और वो पेट्रोल शायद वो निचे गर्दन रखे बैठा हुआ है।

यह एक चित्र हैं और इस चित्र में बहुत बड़ा बहुत बड़ा--

यह एक चित्र और चित्र में एक लाइब्रेरी जैसा कमरा दिख रहा हैं।